और पेन कम्प्यूटर चा चाकू है और कुर्सी भी है।

यहाँ पे एक कपड़ा किताब का दुकान है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं और यहाँ पे बहुत सारे किताब हैं और यहाँ पे एक पंखा है एक घड़ी है और सब कोई सब कोई सब आदमी यहाँ पे किताब ले रहें हैं।

जैसे यहाँ पे पार्क लग रहा है बहुत बड़ा-बड़ा पार्क बनाया जंगल भी है जंगल बहुत --

योगा सिखा रहें हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं लड़का भी है और एक पैर में खड़े हुए --

और यहाँ पे पेन भी बहोत सारे किताबें भी बोहोत सारे हैं।